ईटे खपड़ें के घर हैं एवम येलवेस्टर के घर हैं ढलाई के घर हैं।

बहुत ही जगह पर बहुत सुन्दर ईटे से घेरा किया गया है यहाँ पर रंग-बिरंग के फूलों के पौधे दिखाई दे रहे --

यह बस में चढ़ने से सभी आदमी अपने-अपने सफर करते --